यह एक पार्क है। यहाँ पर लोग शूटिंग के लिए --

ये एक डी जे की फोटो है। ये शादी ब्याह में बजाया जाता है।

यहां पर लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं।

यह एक गांव है। यह एक गली है यहां पर --

ये एक ओक्टोपस् है| यहाँ पर ये जाल के अंदर हैं| ये ओस्टेज हैं।